ये हेयर सैलून है जो हेयर सैलून जिसे हमलोग अपना भाषा मे सैलून कहते है जहाँ पे बाल कटाया जाता है और दाढ़ी भी सेविंग भी करवाया जाता है काफी सारे लोग रहते है और ये सैलून जो है बहुत अच्छा है।

पंडाल से बना हुआ गेट है जो शादी ब्याह के फंक्शन में जो पंडाल से गेट बनाया जाता है वही गेट है और बहोत ही अच्छा बहोत ही प्यारा गुफा टाइप का गेट बना हुआ है जो बहोत ही लंबा गेट है।

जो बहुत ही उम ज्यादा सोलर प्लेट भी लगा हुआ है टावर भी बहुत बड़ा है जो किसी चीज का सप्लाई होता होगा यहाँ से और ये खेतों के बीच में है तो हो सकता है की ये खेतों में पानी चलाने के लिए ये सोलर प्लेट लगाया गया हो।

ये आई.डी.बी.आई. बैंक का ए.टी.एम. है जो ए.टी.एम. जो ए.टी.एम बहोत सी जगह रोशनी है जो लाइट लगा हुआ है उसके कारण |

ये पुल है जो गंडक का पुल है और ये पुल हमें देखने से हमें पता चल रहा है कि ये समस्तीपुर का ही पुल है। हम इस पुल में गए हुए हैं। इसके बगल मन लचका पुल है।